लोहे का रॉड को बांध रहे हैं ढलाई करने के लिए बहोत सारे लोग जो हैं स यहां पे बहोत ही सबसे--

बहोत ही बढ़िया तरीका से ये नृत्य कर रहा है सफेद कपड़ा लगा हुआ लाइटिंग भी बहोत ही बढ़िया है बहोत ही खूबसूरत है और ड्रेसिंग बहोत बढ़िया लग--

मेडल्स रखे हुए है कप रखे हुए क्रिकेट बैट दिख रहे शूज दिख रहे ओलंपिया स्पोर्ट्स दिख रहा है।

ये जो तस्वीरें हैं एक रिसेप्शन एरिया का तस्वीर है जहां पे लिखा है वी केयर डेंटल क्लिनिक --

ऊपर ला सर पे लाल कमच्छा लगाया हुआ है कोई गोल्डेन का एक मतलब गोल्डेन कलर का शर्ट पहना हुआ है।

चर्च का जो एंट्रेंस का दरवाजा है बहोत ही बड़ा है और यहां पे जो है चर्च का जो ऊपर में जो है यीशु मसीह का क्रॉस लगा हुआ है और --